नमस्कार दोस्तों using plot command interactively in ipython पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँubuntu linux 1404 ऑपरेटिंग सिस्टम
इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए पूर्वापेक्षाएं हैं
यदि नहीं तो संबंधित python ट्यूटोरियल के लिए कृपया इस वेबसाइट पर जाएं
सबसे पहले ctrl+alt+t कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
अब ipython3 टाइप करें और एंटर दबाएं
pylab package आरंभ करें percentage pylab टाइप करें और एंटर दबाएं
पहले समझते हैं कि pylab क्या है
pylab सुविधाजनक python मॉड्यूल है
ipython कंसोल में percentage pylab चलाने के बाद आप एक संदेश देखेंगे using matplotlib backend: tkagg
जिसका अर्थ है matplotlib चल रहा है
लेकिन कभीकभी आपको एक एरर मिलती है जो कहती है
ऐसे मामलों में आपको matplotlib संस्थापित करना होगा और इस कमांड को फिर से चलाना होगा
ipython कंसोल पर वापस आएं ipython कंसोल में linspace के बाद प्रश्न चिन्ह टाइप करें एंटर दबाएं
कृपया ध्यान दें कि कमांड linspace है linespace नहीं
प्रदर्शित जानकारी दर्शाती है कि
प्रलेखीकरण से बाहर निकलने के लिए q दबाएं और कंसोल पर वापस आएं
1 से 100 से 100 प्वाइंट्स बनाने की कोशिश करें और टाइप करें linspace brackets 1 comma 100 comma 100
यहाँ 1 start है 100 stop है और अगले 100 प्वाइंट्स के नंबर्स है अब एंटर दबाएं
जैसा कि आप देख सकते हैं 1 से 100 नंबर्स का क्रम प्रदर्शित होता है
अब 0 और 1 के मध्य 200 प्वाइंट्स बनाने की कोशिश करें
हम linspace brackets 0 comma 1 comma 200 टाइप करके ऐसा करते हैं और एंटर दबाएं
यहाँ नंबर्स का अपेक्षित क्रम है
linspace में start और stop प्वाइंट्स integers decimals या constants हो सकते हैं
अब len फंक्शन के बारे में सीखते हैं
पहले हम minus pi और pi के मध्य 100 प्वाइंट्स बनायेंगे
अतः टाइप करें linspace brackets minus pi comma pi comma 100 और एंटर दबाएं
यहाँ pi pylab द्वारा परिभाषित एक स्थिरांक है
अब इस t नाम से एक वेरिएबल में सेव करते हैं एंटर दबाएं
यदि हम अब len bracket t टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं तो हमें minus pi और pi के मध्य प्वाइंट्स के नंबर प्राप्त होंगे
len फंक्शन दिए गए क्रम में मौजूद एलिमेंट्स के नंबर्स देता है
आगे minus pi और pi के मध्य cosine curve प्लॉट करने की कोशिश करें
इसके लिए हम plot कमांड का उपयोग करते हैं टाइप करें plot brackets t comma cost और एंटर दबाएं
जैसा कि आप देख सकते हैं cosine plot से cost प्वाइंट t के अनुरूपी प्रत्येक प्वाइंट पर cosine वेल्यू प्राप्त करता है
हम cosine equals to cost टाइप करके वेरिएबल cosine में cost की वेल्यू भी असाइन कर सकते हैं एंटर दबाएं
और फिर plott comma cosine टाइप करके प्लॉट करें और एंटर दबाएं
प्लॉट साफ करने के लिए हमें clf फंक्शन का उपयोग करना होगा यह पुराने प्लॉट्स पर नए प्लॉट्स का अतिच्छादन रोकता है
कंसोल में टाइप करें clf और एंटर दबाएं पिछला फ्लॉट साफ हो गया है और एक खाली प्लॉट विंडो प्रदर्शित होती है
sine प्लॉट को प्लॉट करने की कोशिश करें
टाइप करें plot brackets t comma sint और एंटर दबाएं एक साइन प्लॉट प्रदर्शित होता है
प्लॉट विंडो पर प्लॉट को बेहतर समझने के लिए हम कई ऑप्शन्स का उपयोग कर सकते हैं जो इसमें उपलब्ध हैं अब इन ऑप्शन्स को देखते हैं
प्लॉट के साथ माउस प्वाइंटर को मूव करना हमें प्लॉट पर प्रत्येक प्वाइंट का स्थान बताता है
यहाँ ध्यान दें विंडो के दायीं ओर तल पर यहाँ कुछ बटन्स हैं
उनमें से सबसे दायीं ओर वाला फाइल के सेव करने के लिए है केवल इस पर क्लिक करें और फाइल नाम टाइप करें
pdf format में sin underscore curve नाम से प्लॉट को सेव करें
यहाँ ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फाइल को सेव करने के लिए कई फार्मेट्स हैं फॉर्मेट्स जैसे png eps pdf और ps उपलब्ध हैं
हमें फॉर्मेट को निर्दिष्ट करना होगा जिसे हम सेव करते समय पसंद करते हैं
सेव बटन के बायीं ओर slider बटन है इस बटन का उपयोग करके हम प्लॉट विंडो का मार्जिन निर्दिष्ट कर सकते हैं
slider बटन के बायीं ओर zoom बटन है इसका उपयोग प्लॉट में जूम करने के लिए किया जाता है जूम करने वाले भाग को निर्दिष्ट करें
जूम के बायीं ओर के बटन का उपयोग प्लॉट के axes को हस्तांरित करने के लिए कर सकते हैं
बाएं और दाएं ऐरो के साथ अगले दो बटन्स प्लॉट की स्थिति बदलते हैं
यह हमें प्लॉट की पिछली और अगली स्थिति पर ले जाते हैं यह ब्राउजर में बैक और फारवर्ड बटन की तरह कार्य करते हैं
अंतिम प्लॉट की शुरूआत से संबंधित home है
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय हल करने की कोशिश करें और फिर पुनः विडियो चलाएं
प्लॉट sinx multiplied by sinx divided by x
इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं हमने सीखा
len फंक्शन का उपयोग करके क्रम की लंबाई ज्ञात करना
प्लॉट विंडो के ui में बटन्स का उपयोग जैसे save zoom move axis back और forward औरhome
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
2 हम क्रम की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं
3 कमांड linspaceminus pi comma pi comma 100 क्या करेगी
और उत्तर हैं
lensequence underscore name क्रम की लंबाई ज्ञात करने के लिए उपयोगित फंक्शन है
कमांड linspaceminus pi comma pi comma 100 minus pi और pi दोनों सहित pi से pi तक 100 समान स्थान वाले सैंपल वापस करेगी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
हम कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
क्या इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपको कोई प्रश्न है
मिनट और सेकंड चुनें जहाँ पर आपके पास प्रश्न है अपना प्रश्न संक्षिप्त में बताएं fossee टीम से कोई उनका उत्तर देगा
क्या आपके पास कोई सामान्य/तकनीकी प्रश्न है लिंक पर दिए गए फोरम पर जाएं
fossee टीम लोकप्रिय पुस्तकों के कई हल किए गए उदाहरणों की कोडिंग का संयोजन करती है
हम ऐसा करने वालों को मानदेय और प्रमाण पत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से में जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद